इस फोटो में एक दुकान है जिसके दीवाल का रंग सफेद है इसमें काफी सारे रैक हैं।

टांगे हुए हैं बहुत सारे पानी के बोतल भी टांगे है।

सामने एक काउंटर है जो बाहर से गुलाबी रंग का है।

उसके दीवाल के ईट्ट का रंग लाल है।

कहीं कहीं पे सफेद रंग का ट्यूबलाइट लगा हुआ है।

नीचे काफी सारे अलग अलग सामान के पैकेट है।

इस फोटो में एक काफी बड़ा सा नदी है।

पीछे धूप निकला है जो कि पूरा पीला है।

आसमान पुरा सफेद रंग का और नीचे से पीला रंग का है।

इस फोटो में एक इलेक्ट्रॉनिक्स का दुकान है जहां सामने में एक काउंटर है।

और डब्बा का रंग सफेद और लाल है और ये सब एक ही ब्रांड के हैं।

इसमें से कोई ही कोई अलग अलग ब्रांड का बोतलों का रंग अलग अलग है।

इसमें एक काला रंग का टायर रखा हुआ है।

जो कि बर्फ में है सामने काफी सारे आदमी लोग है कुछ आदमी काम कर रहे हैं कुछ खड़े और कुछ चेयर में बैठे हुए है।

टीवियों के स्क्रीन पूरा कला है और ऊपर में लाल रंग का बड़ा सा पोस्टर है।

इस फोटो में एक काफी बड़ा सा बिल्डिंग है जोकि सफेद और क्रीम कलर का है।

रैको मे बहोत सारे सामान रखे हुए है बहोत सारे मोटे पतले छोटे बड़े किताब रखे हुए है।

इस फोटो में एक बड़ा सा हाल है।

इस फोटो में सामने एक काफी बड़ा सा पंडाल है जो कि पूरा सफेद रंग का कपड़ा से बनाया गया है उसमें लाल रंग से पूरा लिखा हुआ है।

बहुत सारे पीले लाइट जल रहे हैं सीलिंग पूरा सफेद रंग का है नीचे जमीन में टाइल्स लगा है जो की सफेद रंग का है।

और बहोत सारे इसमें खिड़की और दरवाजा है।

जो की सफेद है और उसके अगल बगल से हरा रंग किया हुआ है।

रैक के अंदर से भी सफेद रंग किया हुआ है।

सामने एक बड़ा सा पोस्टर लगा है ऊपर की ओर जिसमें कि बैग का फोटो बना हुआ है।